दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और ये कॉलेज का डिजाइन सफेद कलर से बना हुआ है ये चार पिलर पे दिख रहा है और आगै का फर्श अअअ पोजाई किया हुआ--

नीचे एक चक्का दिख रहा है। मैकेनिक का जो कपड़ा है वो ब्लू कलर का है और सामने बहोत सारे टूल्स दिख रहे हैं।

फ्यूचर को देखते हुए और घर के साथ एक --

ला बिल्डिंग है और उसे तीन कलरों से पेंट किया गया है एक अ पीला है व उजला है और गुलाबी कलर है।

ऊपर बहुत सारे पिलर हैं जो दिख रहे हैं और फ्यूचर में बनाने के लिए और घर में शटर भी दिख रहा --

है औररर पूल के ऊपर जो बॉन्ड्री बनी हुई है रेलिंग बनी हुई है और पूल के नीचे पानी नही है सूखा हुआ है।

बहुत बड़ी नदी है नदी पे सामने पुल दिख रहा है।

सलून है सलून के गेट पे एक फोटो बना हुआ है और दो कुर्सी है एक टेबल है टेबल पे इगलू पे पानी रखा हुआ है| कुछ झोले टांगें हुए हैं ब्लू कलर के और रेड कलर के और भी कलर हैं।

सामने भी दो तीन म्म् चार पोस्टर दिख रहा है जो किसी और का पोस्टर है।